यहाँ पर मुझे बहुत सारे डब्बे हैं जो दिखाई दे रहे हैं जो पंखे के हैं और पेन के हैं ।

यहाँ पर मुझे एक अलमारी दिखाई दे रहा है जो बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो रखी गई हैं जो एक बाय एक रखी गई हैं लाल पीला ब्लू हरा--

अब एक वाइट कलर का बक्सा है और एक डब्बा रखा हुआ है जो काले रंग का है जिसमें बी_एस लिखा हुआ--

रसमलाई लड्डू ऊ नमकीन रखे हुए हैं।

और एक पेड़ है पीछे जो बहोत घना है जिसमें छोटे-छोटे पत्ते हैं और जो तना है वो मोटा-मोटा है और जो बैनर लगा उसमें एक लाइट लगा हुआ --

एक और लड़की दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर का पैंट पेहनी हुई है और टी-शर्ट पेहनी हुई है जो वाइट कलर का है।

यहां पर मुझे रोड है जो दिखाई दे रहा है उसके बगल में कच्चा रोड है जिसपे बहोत सा कचरा है।

फेंका गया एक बाइक है जो साइड से जा रहा है एक आदमी है जो चला रहा है जो --

और चिमनी है जिससे बहुत सा धुँआ है जो ऊपर निकल रहा है तार है घर है आसमान--

जो कुर्सी है जो ब्राउन कलर का हरा कलर का और हल्का मिट्टी कलर का है बहुत से बक्से जो रखे हुए हैं।

यहाँ पर मुझे शॉप है जो दिखाई दे रहा है जो नया उद्घाटन हुआ है बहुत से फूल हैं जो लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और बॉडर है जो व्हाइट कलर का है।

और जो पर्दा लगा हुआ वो गोल्डन कलर का एक कंप्यूटर है जो आगे दिखाई दे रहा है और तीन कुर्सियाँ हैं जो स्टील --

और जो दीवार है वो सफेद कलर का दो बाइक हैं जो बाहर में खड़ी हैं जो पीछे का लाल-लाल लाइट दिख रही है और नंबर प्लेट दिखाई--

यहाँ पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और एक है जो बाहर रखा हुआ है केबल है।

का काँच है जो लगा हुआ है अब पर्दा है जो रेड कलर का गोल्डन कलर का है।

यहाँ पर मुझे एक दरवाजा है जो खुला हुआ है जिसमें किसान लिखा हुआ है।

जो दरवाजा का कलर है पीले रंग का है बहुत सा सीमेंट है जो दरवाजा के किनारे में रखा हुआ है।

ये पीला लाल ब्लू रंग का है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्वेटर पहने हुए हैं जो रेड कलर के पहने हुए--

यहाँ पर मुझे एक होटल का बेडरूम है जो दिखाई दे रहा है मशीनें दीवार में लगा हुआ है।

यहाँ पर मुझे एक छोटा सा आ दीवार दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है तीन गेट जैसा बना हुआ है।

उसके बगल में एक और छोटा सा घर है जो दीवार है वो पर्पल कलर का है ऊपर जैसा बना हुआ है।

जो बैग में रखे हुए है वो गोल्डन कलर के आगे में रखे हुए है बहुत सारे लहंगे है जो अंदर में ठुसे हुए हैं।

गुलाबी सादा कलर का बलून है एक आदमी जो नीचे खड़ा है आप प्लास्टिक का--

और लड़के हैं जो खड़े हैं एक आदमी है जो चल रहा हाफ स्वेटर पहना बहुत सारे बाइक हैं जो नीचे रखी हुई हैं जो काले रंग की हैं।

यहां पर मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का जो बहोत लंबा है बाहर में छोटे छोटे गमले हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।